गाछ के केला का पेड़ है। पीला कलर का पानी है पानी है। चारो तरफ से गाछ लगा हुआ है हां हां --

लोग प्रोग्राम कर रहे है । मराठी लोग है । व्हाइट शर्ट पहने हुए हैं । फुल है ।